यहाँ पे आप देख सकते हैं ढेर सारी यहाँ पे गाड़ियाँ मोटरसाइकिल है।

यहाँ पे हम देख सकते है बहुत सारे यहाँ पे हरमुनिया है और तबला हैजो की देखने में बहुत ही अच्छा लगता है और यहाँ पे संगीत कलाकार के सीखने वाली सभी चीज है जो की देखने में काफी अच्छे लगते है काफी सूंदर है।

यहाँ पे एक टावर है जो की बोहोत लंबे हैं देखने में बोहोत ही अच्छा लगता है इसके सामने एक और छोटा टावर है देखने में बोहोत ही अच्छी लगते हैं यहाँ पे --

यहाँ पे हम देख सकते हैये सिटीरिक्शा का शोरूम है जो की दिखने में बहुत ही अच्छे लगते है और यहाँ पर बहुत सारीसिटी रिक्शा है दिखने में बहुत ही अच्छे लगते है काफी सूंदर है।

यहां पे हम देख सकते है कार्यालय लिखिए गए है जिला सहकारिता पदाधिकारी लिखे हुए है जो कि देखने में बहोत ही अच्छा देखने में लगता है ।

यहाँ पे आप देख सकते है बहुत ही बड़े-बड़े यहाँ पर घर है बिल्डिंग देखने में बहुत अच्छे लगते है काफी सुन्दर है और यहाँ पर भेपर भी लगाये हुए है जो की बहुत अच्छा देखने मे लगते है।